फुल्ली एसी है देख सकते हैं यहाँ बोहोत सारे लोग बैठ सकते हैं बोहोत सारे फंक्शन्स कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन्स बिज़नेस फंक्शन्स ।

और मैरिज फंक्शन भी कर सकते हैं। ये काफी शानदार है।

ये एक स्तम्ब बना हुआ है जिसपे लिखा है अहिंसा परमो धर्मः और ये स्तम्ब काफी सुन्दर है इस स्तम्ब के ऊपर --

इकठ्ठा हुई हैं। बच्चे हैं। बैलून्स गुब्बारे लगे हुए हैं सफ़ेद नीले हरे गुलाबी और ये छत पर्व है बहुत ही --

एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी हुई है।

ने उपचार के लिए तो डॉक्टर जे.पी. गुप्ता जी इसको देखते हैं और लोगों का इलाज करते --

एक बूढ़े चाचा जी है। एक व्यक्ति है। लगता है सूर्ति बना रहा है। जैकेट पहना हुआ है।

यहाँ से लोग पैसे निकालते हैं अपनी जरुरत के हिसाब से और अपने-अपने काम को करते हैं।

सिन्मा का हॉल काफी बड़ा है। काफी सीटें हैं।

है स्प्लेंडर है पैशन है काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे हैं।